एक खूबसूरत सा नदी दिख रहा है जिसमें जिसके पानी में ऊपर बादलों की परछाई है जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

हवेली दिख रही है जो खंडर हो चुकी है और जिसके बाहर पूरी तरह से घास सूख गए हैं।

कुछ लोग हैं जो यहां घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक थिएटर हॉल दिख रहा है जो पूरी तरह से ख़ाली हैं।

यह एक जीम है जिसका उद्घाटन हुआ है बलून से सजा हुआ है वह एक व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी फोटो खींच रहा है ।

और औरतें खड़ी हुई है कुछ बच्चे हैं इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसके ऊपर लाइट लगी हुई हैं ।

यह एक सलून की फोटो है जहां शीशे लगे हुए हैं।

पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसपे घर है घर के छत पे एक व्यक्ति खड़ा हैं जो ये देख रहा हैं कि बारिश होने के बाद सड़क पे पानी भर गया हैं।

दीवार हैं जिसपे बड़े ही स्टाइलिश तरीके से फ़ूड लिखा गया हैं ऍफ़ और बीच में साइकिल हैं साइकिल के दोनों पहियों को ओ बनाया गया हैं। .

लोग खड़े हैं वहां आसमान नीला दिखाई दे रहा है ।

यह एक चर्च की फोटो लग रही है जहां ईसा मसीह की मूर्ति लगी हुई है।

उसके सामने पांच लोग बैठे हुए हैं एक लेडीज खड़ी हुई है जो माइक पे बोल रही है।